ठीक किया जाता है पंचर बनाया जाता है।

और नजारे का आनंद ले ले रहा है और वहां पे एक ब्रिज दिख रहा है बहुत लंबा सा ब्रिज है।